इसलिए बाइक दुकान बहोत मस्त है इसलिए क्योकि इसमें कस्टमर ज्यादा जाये इसलिए इतना सजावट देते है ताकि कस्टमर मेरे दुकान में आये।

जैसे की य - यहाँ पर देखने में बहोत अच्छे है मूर्ति भी और यहाँ का जगह भी बहुत अच्छे है मंदिर भी बहुत अच्छे से बनाया गया है।

ये देखने में बोहोत सुंदर लग रहा है यहाँ पर हर जगह से सिक्युरिटी लगा हुआ है देखने मे बोहोत अच्छा लग रहा है देखने में बोहोत सुंदर लग रहा हैं ये मंदिर बोहोत अच्छा से बनाया गया है बोहोत अच्छा भी लग रहा है देखने में।